यहाँ एक मोर दिख रही है जो लकड़ी पर है बहुत सारी लकड़ियों के ऊपर खड़ी हुई है कहीं कपड़े दिख रहे हैं केले का पेड़ दिख रहा है।

ये एक बड़ी सी नदी दिख रही है नर्मदा जी टाइप दिख रहा है जो इसमें एक आदमी नाव चला रहा है एक एक कोने पर बैठा है दूसरा दूसरे कोने पर बैठा है दोनों अपनी-अपनी नाव चला रहें हैं।

एक क्रिकेट का बैकग्राउंड दिख रहा है जिस में व्हाइट कलर की लाइनिंग है और ब्लैक कलर की परछाई दिख रही है।

मिट्टी दिख रही है बहुत सारा कचड़ा दिख रहा है और कुछ का कलर है कुछ का ब्लैक एंड व्हाइट कलर है।

कुछ बकरिया घना चारा खा रही हैं कुछ बकरिया खड़ी है पेड़-पौधे दिख रहे हैं जालिया लगी हुई है बहोत सारी ---

वी आई एस एच के विशाखा डेयरी पार्लर लिखा हुआ है और कई सारे उसमे बोर्ड्स लगे हुए है विशाखा डेयरी के।

यहाँ एक ऐ.सी. लगी हुई है। डी ऐम डांस नेटू लिखा हुआ है। दो खिड़कियां दिख रही हैं कई बच्चे एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रे कलर की दीवाल है।